रोड के किनारे ढेर सारे घर बनाए हुए हैं।

एक दीवाल है जो स्काई ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है बोर्ड लगा हुआ है उधर सोफा ढेर सारे रखे हुए हैं।

ये तो मेला दिख रही है जो की यहाँ पे बड़े-बड़े झूले लगाए हुए हैं नावे लगाए हुए हैं ।